यह कहीं का एंट्री गेट है।

गाना गा रहा है उसने ये उसके टीम है जो कि उसका साथ दे रही है यहां पर कई लोग--

यहां पर शादी अभी स्टार्ट नहीं हुई है इस डेकोरेशन में बहुत ही सुंदर बलूंस और फूलों का इस्तेमाल हुआ है।

यह एक शादी या फिर किसी फंक्शन का व्यू लग रहा है इसको बहुत सुंदर डेकोरेशन इसके गेट पर की गई है।

बॉक्सेस में कुछ सामान है जोकि फैक्ट्री में लोड किया जाएगा।

ये सभी लोग मां को नमस्कार करने के लिए एकत्रित हैं।

इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह एक यह जजन मिस्री के गार्डन का व्यूव हैं।

यहां पर काफी क्रीम भी लगाई हुई है।

रहता है।

यहाँ पर हर एग्जाम की तैयारी एजुकेटेड स्टाफ के द्वारा क्या कराई जाती हैं।

यह एक शादी का व्यू है यहां पर काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं।

यह झज्जर में स्थित एक स्टेडियम का व्यू है ये स्टेडियम काफी बड़ा है यहां पर यहां पर क्रिकेट --